यह एक छोटी सी होटल की दुकान है।

एक है स्ट्रॉबेरी एक है वैनिला और एक है बटर स्कॉच फ्लेवर ।

ये शिवाय मोबाइल्स सिटी मॉल के पास--

यहां पर आपको एक मेडिकल स्टोर दिखाई दे रही है।

महंगी से महंगी इंपोर्टेस से इंपॉर्टेंट दवाइयां मिल जाएगी।

यहां पर आपको सबसे अच्छे दाम और ई_एम_आई पर भी स्कूटर मिल जाएगा और कम डाउन पेमेंट पर भी।

ताकि वे जल्द से खराब ना हो--

स्टेज गेट जयमाला बड़ी माला छोटी माला गुलदस्ता बुके --

एवं फूलों के आर्डर लिए जाते हैं।

यह एक मॉड्यूलर किचन के बनते हुए की तस्वीर है यहां पर नीचे--

इस फोटो में अलग अलग कलर के मालाएँ रखें हुवे हैं जैसे की पीले पर्पल यल्लो --

कहीं से आ गया है बरसात के समय पर।

का ए_टी_एम है जो कि गोपालगंज शाखा नंबर दो है।

टनल की फोटो है यह एक पार्क में स्थित है इस टनल से--

यह एक जेनरल स्टोर है यहां पर बैग कॉफी बु--

प्रकार की मछलियाँ बेची जा रही हैं।

और लोग उनको खरीदने के लिए आए हुए है।

इस तस्वीर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का है।